एक आदमी मिर्ची बिन रहा है।

एक लड़की पेपर लिख रही है।

जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी हैं।

जिसमें सी_सी_टी_वी कैमरे की रिकॉर्डिंग है।

यह एक नाई की दुकान है।

आदमी कुछ काम कर रहा है।

यहां फ्रिजी की तीन डब्बे रखे हैं एक टेबल है।